चित्र है। इस चित्र के माध्यम से हमे ये पता चल रहा है यहाँ चित्र एक कोई कोई कोई प्रोग्राम की है। जहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है। ये लोग अपना खेल तमाशा दिखा रहे है। और लोग उसको देख रहे है।

'' इस चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा हैं की यह चित्र एक स्कूल की हैं और इस स्कूल में बच्चे बेंच पर बैठे हुए अपना एक्जाम दे रहे हैं और मैम भी खड़ी हुई हैं। ''

यहाँ पर कोई समरोह जश्न मनाया जा रहा है और काफी सारी बिल्डिंगे भी दिख रही हैं।

यह एक चित्र हैं इस चित्र के माध्यम से हमे पता चल रहा हे ये अच्छी तरह ये साइकिल की दूकान होती हैं छोटे बच्चो की साइकिले भी लिंटल पर रखी हुई हैंऔर बड़ी साइकिले भी खड़ी हुई नज़र आ--

चित्र है इस चित्र के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है यह चित्र किसी की दुकान की है और गांव की किसी दुकान की है यहाँ पे सारी चीज़े है और कुछ तेल के और साबुन वगैरा भी रखे हुए नज़र आ रहे है अलमारी के अंदर में --